बहुत साड़ी स्पेसेस यहाँ पे खाली दिखाई दे रही है।

और ऊपर की ओर एक बोर्ड लगा है।

इसके ऊपर बोर्ड लगे हुए है।

और एक बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा --

यह एक साड़ी की शॉप है।

ने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ है और जीन्स पहना है ।

पीछे की ओर एक टेबल टाइप की लगी हुई है।

इसमें जाली लगी हुई है।

नीचे की ओर जो टाइल्स लगी हुई है वो --

साइड में इलेक्ट्रिक बोर्ड लगा हुआ है।

जिस टाइल्स के ऊपर जो गंदा होता है उस --

पंडित जी दिख रहें हैं जिन्होंने --

जिसमें बहोत सारी लहरें दिखाई दे रही हैं।

पानी के आगे की ओर में उस लड़के से कंजी ज़मीन दिख रही है।

पीछे की ओर काफ़ी सारे अलग-अलग बोर्ड लगे हुए हैं।

साइड में एक लड़का खड़ा है उसने रेड कलर की टी-शर्ट दिखाई दे रही है।

साइड में एक है और एक बंदा खड़ा --

और जहां पर दो नाग फन बनाए गए हैं।

जिसने कलर की ड्रेस पहनी हुई है।

यहाँ पेक बड़ी सी बिल्डिंग है ज --

जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं।

जो की ब्लैक कलर का --

साइड में बॉउंड्री ढकने के लिए --

जिस पे ब्लैक कलर की जालियां लगी हुई है।

साइड में गाड़ियां चलती हुई दिख रही है |